इस इमेज में हमें पानी दिखाई दे रहा है जो सफ़ेद रंग का है पानी के ऊपर बोट दिखाई दे रही है जो सफ़ेद रंग की है चप्पू दिखाई दे रहा है और पास में ही --

इस इमेज मे हमे पानी दिखाई दे रहा है पानी मे एक बोट दिखाई दे रही है जिसका कलर सफेद है और नीला है।

और बुक दिखाई दे रही है जिनका कलर लाल पीला काला है और बॅग दिखाई दे रहे है जो काले रंग का है ओर एक आदमी दिखा--

इस इमेज मे हमे एक झंडा दिखाई दे रहा है जिसमे हरा सफेद और ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है और नीचे की तरफ घाँस दिखाई दे रही है।

रोड दिखाई दे रहा है जिसपे अं कूछ ऑटो दिखाई दे रहे जो काले रंग के है बाइक दिखाई दे रही है और रोड पर पानी दिखाई दे रहा है।

इस इमेज मे हमे पानी दिखाई दे रहा है नदी दिखाई दे रही है नदी के ऊपर एक ब्रिज दिखाई दे रहा है पानी मे ए-एक--

इस इमेज मे हमे बैंक दिखाई दे रही है बैंक के सामने गड़िया दिखाई दे रही है जो ब्लैक रंग की है और स्कूटी दिखाई दे रही है।

पास मे ही बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है और फूल दिखाई दे रहे है जो गुलाबी रंग के है सामने की तरफ आसमान दिखाई दे रहा है और बादल दिखाई दे रहे है जो सफेद रंग के है।

इस इमेज में हमें एक पहाड़ के नीचे मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर में एक शिव जी की मूर्ति दिखाई दे रही है जो काले रंग की है।